सामने की ओर रोड पर कई सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में सामने कुछ महिला भरतनाट्यम नृत्य करते दिखाई दे रही हैं।

यह एक पेंट और हार्डवेयर दुकान के बाहर का दृश्य है।

एक मास्क लगाए महिला भी तस्वीर के सामने दिखाई दे रही है।

सभी बेंच लकड़ी के लंबे लंबे हैं।

यह एक किताब दुकान के बाहर का दृश्य है।

इस तस्वीर मे कुछ बच्चे एक पीले रंग के मकान के बाहर दिखाई दे रहे है।

सामने एक बच्चा स्कूटी पर बैठा दिखाई दे रहा है और सब के कंधे पे बैग है।

अंदर की ओर एक बोलोरो कार भी है।

ऑयल के डब्बों पर वर्थ लिखा हुआ है और पीछे की दीवार सफेद रंग की है।

बोर्ड पर इंग्लिश में सीड्रा ग्लास एंड स्टील लिखा हुआ है।

पीछे की ओर भी एक बड़ा सा बुक दुकान है जिसके बोर्ड पर प्रगति बुक सेंटर लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में सामने कई सारे अलग अलग कंपनी के बैट और नीचे कुछ गेंदे रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में सामने एक पेट्रोल पंप दिखा दिखाई दे रहा है।

ऑटो रिक्शा के साथ साथ कुछ लोग भी सड़क पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं।

ए_सी के नीचे इंग्लिश में डांस नेशन लिखा हुआ है।